बहुत दूर में है और हरे कलर का --

ये बच्चे वाला बहुत सुन्दर है पार्क जैसे बना हुआ है।

पैर में घुंघरू बांधे और एक्टिंग कर रहे है महिला लाल और हरा और आसमानी कलर का कपड़ा पहने हुए है।

यहाँ पर साथी कंपनी खुला है और यहाँ पर बहुत सारे कपड़ा भी दिखाई दे रहे हैं।

पीले कलर का दिखाई दे रहा है एक आदमी वाइट कलर का कपड़ा पेहने --

यहाँ पानी में तैरते नाव दिखाई दे रहे हैं और नाव बहुत --